पुस्तकालय के बाहर पोस्टर भी लगाया गया है।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

एक व्यक्ति साइकिल ले जाते हुए भी दिखाई दे रहा है।

सामने मैं एक भवन दिखाई दे रहा है जिसको बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है।

यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था बहुत ही अच्छे से की गई है।

यह रेस्टोरेंट के बाहर का फोटो है जहां पर बहुत सारे व्यक्ति सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह एक सड़क है जहां पर लाइन से बहुत सारी ट्रके जा रही है।

बहुत सारी मिठाइयां भी रखी गई है।

सामने बहुत सारे कमरे दिखाई दे रहे हैं नीचे का फर्श बहुत ही साफ सुथरा दिखाई दे रहा है।

यहां का फर्श बहुत ही साफ दिखाई दे रहा है।

सामने में एक लड़की कुछ खाते हुए दिखाई दे रही है।

सडक के किनारे एक शोरूम को बनाया गया है।

यह एक कपड़ों की दुकान है जहां पर जेंट्स लेडिस और बच्चे के सामान रखे हुए हैं।

एक टोटो पर एक आदमी बैठा हुआ है पहले टोटो का रंग ग्रीन है।

दुकान के बाहर बहुत सारे व्यक्ति लाल कपड़ा पहने हुए दिखाई दे रहे हैं।

पुस्तकालय के बाहर बहुत सारी बाईकें नजर आ रही है।

सामने में कुछ भवन दिख रहे हैं और यहां का माहौल बहुत ही हरा भरा है।

यहां का फर्श बहुत ही साफ सुथरा दिखाई दे रहा है।

यहां पर लाइटिंग की व्यवस्था बहोत अच्छे से की गई है।

यहां पर बहुत किस्म के फेस वॉश रखे गए हैं यहां पर बच्चों का भी समान रखा गया है।

ये बकरियां रंग-बिरंगी दिखाई दे रही है।

यह एक नदी का फोटो है जहां पर बहुत सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

मैदानों में घास को लगाया गया है।

कुछ एल_ई_डी बल्ब भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर टी_वी भी लगाया गया है।

पुल के सपोट के लिए बहुत सारे पिलर दिए गए हैं।

मंदिर के ऊपर एक झंडा भी दिखाई दे रहा है।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

नीचे के फर्स पर मार्बल को लगाया गया है।

यहां पर सोफे भी लगाए गए हैं एक टी_वी भी लगाया गया है एक टेबल भी रखा गया है।

आमने में खिड़की दिखाई दे रही है।